हम देख रहे है जो की पहाड़ है पहाड़ पर पत्थल दिख रहे है बहुत बड़ा-बड़ा पत्थल है जोकि हम देख रहे और पेड़ पौधे बहुत सी है दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं।

और इधर भी तार है उधर भी तार है और बीच में रास्ता है बगल में पहाड़ है उधर भी पहाड़--